यह एक पेट्रोल पंप है जहाँ सब कोई पेट्रोल भराने के लिए आते हैं।

लोड करके ले जा रहै है विर्सजन करने के लिए --

और यहाँ डीजे भी लगाया गया है जिनसे से म्यूजिक बजता है।

जिनसे ये बच्चे सब खेल सके इस मैदान मे--